इस इमेज पर एक कार दिखाई दे रहा है।

और इसीमें इसपे एक स्कूटी रखा हुआ है बैठने का एक--

पथरा का दिखाई दे रहा है और उस।

नीचे जमीन पर एक नीला कलर का --

कुछ लोग टोपी लगाकर आर्डर ले रहे हैं।

बाहर दीवार में एक पेपर का पोस्टर लगा हुआ है दीवार का कलर --

इस इमेज पर कुछ बच्चे और--

तीन चमज रखा हुवा है आइसक्रीम का कलर है पिंक येलो --

नयी दे रहा है उसके ऊपर नेट प्लेट लगा हुआ है।

बहुत सार सारी कलर का लाइट चालू है पीछे।

मंदिर के ऊपर कुछ मूर्तियां छोटे छोटे दीवार --

नीचे जमीन को बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज पर एसबीआई का एटीएम दिखाई दे रहा है।

बैटिंग के ऊपर एक नेम प्लेट लगा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया --

इनका कपड़ा का कलर व्हाइट और लाल अ--

खड़ी है आजू बाजू औरत और आदमी बच्चे खड़े हैं।

पार्किंग है गाड़ी का कलर है ग्रे ।

गाड़ी का नंबर है यू_पी सिक्स फाइव बी_बी सेवन थ्री नाइन थ्री है।

इस इमेज को जिम का सेंटर दिखाई दे रहा है नीचे कुछ जिम का सामान --

इस इमेज पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

उनके बाल में गजरे का लगा हुआ है एक हाथ में--

और एक काउंटर्स कैश काउंटर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज पे एक एक डेयरी का सब दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक नेम प्लेट लगा हुआ है करीमनगर।

इस इमेज पे एक बड़ासा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के आजू बिल्डिंग के आजू बाजू पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दो तीन लोग उसके ऊपर जा रहे आ रहे है।

दिखाई दे रही है उसके सामने एक ऑटो रखा हुआ है।

अंदर एक काउंटर पर लेडीज दिखाई दे रही है।

इस इमेज पर बहुत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है फील्ड के--

इस इमेज पर एक म्यूजियम दिखाई दे रहा है।

गोल्डन कलर का बीच में बड़ा मूर्ति दिखाई दे रहा है।

मूर्ति के मूर्ति में एक आदमी जैसा हाथ जोड़के बैठा हुआ है।

चेयर के ऊपर बैठकर खाना खा रहे है।